और जिसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए हैं। सबने अपने सर पे शॉल डाल रखी है। यहाँ की जो फर्श है वो भूरे रंग की है जिसके दोनों तरफ कई सारे पौधे और पेड़ लगे हुए हैं।

जिसपे कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसके सीशे जो हैं --

एक केस खाली है जो सफेद रंग का है। यहाँ की फर्श लाल रंग की है और छत काले रंग की है और यहाँ पे --

शीशा लगा हुआ है जो कि बंद है।

सामने मुझे एक लड़का दिख रहा है जिसने अपने सर पे कैप लगाए हुए है हरे रंग की उसने सफेद टी-शर्ट पेहनी हुई है जिसपे क्रोकोडाइल बना हुआ है |

सफेद रंग की है जिसपे एक रिबन पड़ा है हरे रंग का।

सामने मुझे एक गैराज दिख रहा है जहाँ पे एक गाड़ी है सफेद रंग की जिस पर नंबर लिखा हुआ है जेएच --